यहां स्टेट बैंक दिखाई दे रही है जहां पर कुछ लोग अंदर जेंट्स जाते हुए दिखाई दे रहे है दो लेडिज दिखाई दे रही है वो है --

यह एक बहुत बड़ा रूम दिखाई दे रहा है जिसमे एक अंकल बैठे हुए नजर आ रहे है।

गंगा जी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर से एक पुल बना हुआ है।